यह चित्र किसी पहाड़ी एरिया का है जोकि सामने कुछ पहाड़ी दिखाई दे रही है पहाड़ी पर कुछ आदमी इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहें हैं।

और स्टेज पे कुछ आदमी और लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।